बहुत सुन्दर भी लग रहा है अलग-अलग फूल हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

एक बड़ा -सा घर है | उसके बगल में बहुत स बड़ा पेड़ है।

और काफी सारे अगल-बगल में घर है दे --

और बैटरी वाला कार है कार में काफी सारी खराबियाँ हैं देख सकते हैं।

और काफी पेड़-पौधे अगल-बगल में हैं। का --

और काफी यहाँ काफी सारे बुक यहाँ पे और काफी सारे --

पानी के वजह से और एक आदमी अपना कपड़ा उठा के जा रहा है यहाँ --

तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एए --

रोड के बीच में खाली बड़े-बड़े खम्भे हैं लाइटिंग के काफी अच्छा लग रहा है देखने में |

तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफी बड़ा पूल है।

बहुत अच्छा है दिखने में मंदिर का भी कलर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।